इस इमेज मे कुछ ईटों से बना हुआ रोड दिखाई दे रहा है अलग टाइप का कुछ बहुत बड़ा गेट बना हुआ दिखाई दे रहा है। नि--

ये इमेज एक ऑफिस की दिखाई दे रही है और एक सामने मे एक आदमी दिखाई दे रहा है जो काउंटर पे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

हरे भरे झाड़ दिखाई दे रहे है हरे भरे पत्ते दिखाई दे रहे है झाड़ों को ऊपर मे आसमान दिखाई दे रहा है।

और सामने से कुछ व्हाइट चमकता हुआ भी दिखाई दे रहा है नीचे हुमे कुछ बॉक्स के जियासी डिजाइने भी दिखाई दे रही है ये जिम बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है।

ये पिच्चर एक पहाड़ की दिखाई दे रही है और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे है हरे भरे झाड़ दिखाई दे रहा--